ये एक शॉपिंग मॉल है जिस पर ऊपर अ शीशे लगे हुए हैं नीचे नॉर्थ स्केयर लिखा हुआ है।

एक काले रंग का है जिसे आदमी ठीक कर रहा है।

गमले के अंदर सब्ज रंग के पौधे लगाए हुए हैं।

ये बाजार का मंजर है जिसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार है कुछ औरतें खड़ी हुई हैं।

बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ है एक नीचे आदमी बैठा हुआ है।